रस्ता से रिक्शा और बाइक लोग भी जा रहा है।

फिर आगे रेड कपड़ा में कोई आता हुआ दिख नजर आ रहा है।

साइड में हेलमेट दिखाई दे रहा है।

ये मंदिर के रास्ता में लाल रंग का झंडा लहराया हुआ है।

मुझे लगता है ये गराज का लोहा है।

जो ऊपर लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

ये दीवार भी सफेद और लाल रंग का कलर में दिख रहा है।

सामने एक गच्छी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

क्रीम पे गोल्ड प्लस भी लिखा हुआ है।

के बॉक्स में इंसान का फोटो दिखा हैं।

इस तस्वीर पे मुझे बहुत बड़ा समुद्र दिखा दे रहा है।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

एक टीना भी थोड़ा जंग लग गया हुआ है।

तस्वीर पर मुझे कोचिंग क्लास दिखाई दे रहा है।

ये स्कूल की दीवारें सफेद रंग की है।

ये बंबू से बनाया हुआ दीवार भी है।

झींगा सब मर चुके हैं।

यहां एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे मुझे खुला मैदान दिखाई मिल रहा है।

बंगला के आगे कुछ महिलाएं खड़ा होते हुए फोटो ले रहा है।

सामने फ्लावर पॉट लोग भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पे हिंदू कांच की मूर्तियां देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर पे कपड़ों की शॉपिंग मॉल दिखाई पा रहा है।

इस तस्वीर पे एक घर दिखाई दे रहा है।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

स्क्रीन के अंदर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा हुआ है।

पानी भी काला रंग का दिखाई दे रहा है।